भाईसाहब होटल मे पता नहीं क्या खा रहे है तीन आदमी एक आदमी खा रहे है एक आदमी देख रहे है एक आदमी मोबाइल चला रहे हैं ।